यहां पे बहुत सारे बाथरूम के एसेसरीज दिखाई दे रहे हैं अलग अलग टाइप्स और डिजाइंस के नल दिखाई दे रहे हैं।

दे रहे हैं और यहां पे एक लड़का ए_टी_एम बैंक का फोटो ले रहा है।

दिखाई दे रहा है और वो पेड़ पौधों में पानी डाल रही है।

और वायर दिखाई दे रहे हैं और यहां पे कुछ दुकान दिखाई दे रहे हैं।

ये एक बड़ा सा वाटरपार्क दिखाई दे रहा है यहां बहोत सारे वाटर स्लाइडिंग दिखाई दे रहे हैं।